आजू बाजू इसके बिल्डिंगस बनी हुई है लंबी लंबी पीछे बागान छोटा हुआ पेड़ पौधे लगे है हरियाली हो रही है पीछे भी पेड़ दूर-दूर तक बिल्डिंग दिख रही है पीछे--

आपको हॉर्स बेल्ट्स दिख रहे है शूज दिख रहा है जो अठेलित है वो लोग दिख रहे है आजु बाजु टीन लगा हुआ है ग्राउन्ड दिख रहा है यश की --

गेट बंद है और ग्लास दिख रहा है गाड़ी दिख रही है और गाड़ी चला फिसलपट्टी बनी है अंदर बिल्डिंग बनी है।